चोकलेट डाले लग गए है जो की देखने से ही लग रहे है खाने में बहुत ज्यादा लजीज और मजेदार होंगा जो भी खायेगा वो बड़ा किस्मत --